यहाँ मुझे यहाँ पर सामने की तरफ एक ठेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक लड़का--

और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर पत्थर डाल के खड़े है सामने की तरफ दो पेड़ लगे हैं हरे हरे से दिखाई दे रहें--

बड़ी-छोटी सी मछलिया रखी हुई है। यहाँ पर सफेद रंग का पाइप है।

मुझे यहाँ पर कुछ पहाड़ी इलाका सा दिखाई दे रहा है जो जंगल सा है यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े से पेड़ हैं कुछ सूखे पेड़ की टहनियाँ दिख--

यहाँ पर सामने की तरफ बहुत बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है जहाँ पर चार--

साइड मे एक बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है जिसकी हल्की सी झलक यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। तार दिखाई दे रहा है।

क्योंकि उसमे लाइटें लगी हुई है वाइट कलर के रोड लगे हुए है।

एक बनाया गया है यहाँ पर एक शंकर भगवान का लिंग जैसा रखा हुआ है नीचे की तरफ चबूतरा है यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है उसने ग--

और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है। बिजली के खंभे दिखाई दे रहे है। ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान का आधा अधूरा आसमानी दिखाई दे रहा। आधा हरे हल्की हरे रंग मे--

मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने ऑरेंज कलर का कोट पहन रखा है सरकारी जेसे की।